यह एक नहर हे नहर में पानी भरा हुआ हे नहर के साइड में बाइक खड़ी हुई है और नहर की ऊपरी ऊपरी सतह पर एक टेकरी है।

यह एक कालोनी का गार्डन है यहाँ पर आइट साइड में घर दिखाई दे रहे हैं यह गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं गार्डन में हरियाली भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।